आसमान दिखाई दे रहा है पीले खम्भे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे वाइट कलर दिखाई दे रहा है एक लड़की ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई हैं।

पर कुछ फ्लावर्स दिखाई दे रहे है वाइट कलर के ऑरेंज कलर के येलो कलर के और यहाँ पर कुछ ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और भी बहोत कुछ दिखाई दे रहा है नीचे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है।

बेग दिखाई दे रही है बहुत सारी जेकेट्स दिखाई दे रही है हा पे ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है ट्यूबलाइट दिखाई दे रहा है बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है चेयर दिखाई दे रहा है।

पैकेट दिखाई दे रहे है ग्रीन पिंक दिखाई दे रहा है येलो दिखाई दे रहा है यहाँ पर हल्का सा पिंक और ब्राउन कलर भी दिखाई दे रहा है कुछ पत्थर दिखाई दे रहा है उनको पर्पल कलर भी दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पे एक दिखाई दे रही बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहा है आसमान ग्रे दिखाई दे रहे है फत्तर दिखाई दे रहे है और भी बहुत सारी चीज़े दिखाई दे रही है यहाँ पर और यहाँ पे वाइट कलर ट --

सकाय ब्लू कलर दिखाई दे रहा है रेड कलर दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है चॉकलेटी कलर दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है और भी बहुत कुछ दिखाई दे र --

--बहोत से बैलून दिखाई दे रहे है ब्लू कलर व्हाइट कलर के रेड कलर के टेबल्स दिखाई दे रही है चेयर्स दिखाई दे रही है टिश्यु पेपर दिखाई दे रहे है सॉस की बोटल दिखाई दे रही है और सब सामान दिखाई दे रहे है ऐसे दिखाई दे।

-- पर व्हाइट पिंक कलर दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है यहाँ पे और बहोत सारा सामान--